गमलों मे पेड़- पौधे लगे हुए दिख दे रहे है पीछे की और बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे उजाला भी आता हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर मुझे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ म--मुझे चट्टान वाले पत्थर दिखाई दे रहा है।